भाइयों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं हमको यहाँं पर एक चित्र दिखाई दे रहा है।

और हाथ गाड़ी भी दिखाई दे रही है गेट दिखाई दे रहा है कपड़े दिखाई दे रहे है और एक चारपहिया भी बाहर की ओर दिखाई दे रही है।

भाइयों जैसा की आप सभी लोग देख रहे हैं हमको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में हम को इशू का सिंबल दिखाई दे रहा है।

और उस गेट के अंदर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है यह मंदिर हम लाल और एक आसमानी कलर से पोती हुई है।

भाइयों जैसा कि आप सभी लोग देख रहै है हमको यहा पर एक चित्र दिखाई दे रहा है।

और हमको यहां पर पानी दिखाई दे रहा है और ये छोटी-छोटी घास की झाड़ी भी दिखाई दे रही है।